ये एक प्रकार का पेड़ है हरे रंग का पेड़ है जो की--

एक एक अलग अलग पत्तियां है जो की पूरी खुली हुई है।

घर के सामने बहुत बड़ी जगह पड़ी है।

पार्क के किनारे हमें काफी पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ये रिबिन से सजा हुआ है रिबिन में हमें लाल हरा नीला सफ़ेद यर गुलाबी रंग दिखाई दे रहा है।

हेली कॉप् कॉप्टरर में अभी कोई नहीं बैठा--

यहां पर हमें ऊपर छह बल्ब दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर टेबल पर बुद्धा की मूर्ति रखी हुई है।

कुछ मूर्तियां रखी हुई है और टनल बनाए गए हैं।

यह तस्वीर एक पार्क की है पार्क में एक बहुत बड़ा स्कूल बना हुआ है।

घर के बाहर एक गार्डन जैसा बना हुआ है जिसमें घास और कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।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

आधे मैदान प हमें घास और पेड़ नजर आ रहे हैं।

जो की पीला काला और नीले रंग की है।

इस तस्वीर में हमें नजर आ रहा है एक शादी हॉल --

ऊपर हमें लाइटे दिख रही है और सभी खिड़कियों पर--

जिसमें से एक ने काली टी शर्ट और नीली जींस पहनी है।

जो कि हरे और सफेद रंग का है अपार्टमेंट में बहुत सारी खिड़कियां बनी हुई है।

कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो डांस कर रहे हैं।

ये तस्वीर हैं जिम की जहाँ पर जिम की मशीने रखी हुई हैं।

टीने दिखाई दे रही हैं एक आदमी दिख रहा है जिसने काली पैंट और सफेद शर्ट पहनी है।

जिसमें गिटार का कलर नीला--

डॉक्टर नरेश कुमार गोयल लिखा हुआ है।

ग्राउंड के किनारे हमें यहां पर बाउंड्री नजर आ रही है और एक कच्ची सड़क दिख रही है।

उनकी मेट का कलर जमुनी गुलाबी सफेद--

ऊपर हमें पंखे और बहोत सारी लाइट नजर आ रही है।

इस तस्वीर में हमें एक कमरा नजर आ रहा है जिसमें एक सोफा रखा है।

यहां पर तीन दो तीन कुशंस रखी है।

इस तस्वीर में हमें नज़र आ रही है एक बेंच जिसके ऊपर बच्चों ने कागज़ की कुछ चीज़ें बनाकर रखी हुई हैं।

इसमें हमें गुलाबी रंग का कागज लाल रंग का कागज--